बँक के बाहर गाड़ियां खडी हुई हैं।

यह फोटो एक मेडिकल कॉलेज की है।

तीन बाइक एक साथ रखी है और एक बाइक उधर साइड में रखी हुई है।

लाइट लगी हुई हैं।

जिसपर बोर्ड लगा हुआ है। द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश --

इसमे बहोत साडियां रखी हुई हैं।

मंदिर की दीवाल पर उम बना हुआ है।

इसमें वह डांस कर रही है।

और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये फोटो शुभ ब्यूटी पार्लर एण्ड कॉस्मेटिक जनरल स्टोर का है।

और फूलों की बहोत सारी मालाएं टंगी भी हुई हैं।

दुकान का नाम बाबा बैद्यनाथ जनरल एवं किराना स्टोर है।